इस का बोहोत बड़ा खाली ग्राउंड भी पड़ा हुआ है।

कुर्सी और चेयर लगी हुई है लाइटिंग और डेकोरेशन बहुत बढ़िया लग रही है इसकी करी हुई है।

यहाँ बच्चो के लिए डांस प्रोग्राम सिखाया जाता है। ये डांस प्रोग्राम का कार्यालय बना हुआ है।

काफी तरह तरह के बाल कटे जाते हैं और हम भी बाल कटवाने आते हैं। बहुत लोग आते हैं। यहाँ पर कैंची उस्तरा ये सब चीज़ वगेरा होती हैं बाल काटने में मदद करती हैं।

और इसमें बोहोत सारे बुके हैं। बोहोत सारी पेन्सिल है और दुकान होती है। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और अच्छी-अच्छी किताबे मिलती हैं।

पंखे लगे हुए हैं। बच्चे पढ़ रहे है और नमाजी लोग भी सब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं।

पर इसमें जनमाज बहुत कई तरह-तरह की होती है। ये हमें बहुत अच्छे लगती है।

और यहाँ पर आस-पास बहुत पब्लिक रहती है और इसके पास में बहुत बढ़िया-बढ़िया गिराउंड हैं और यहाँ फोटो बहुत बढ़िया खिंचते हैं।

यह एक हॉस्पिटल है और यहाँ पर बहुत सारे मरीज आते हैं। तरह-तरह की दवाइयाँ लेकर जाते हैं। तरह-तरह का रोग होता है। और इसके आगे बहुत वो बाइकें खड़ी हैं।

यह एक जिम है और जिम में बोहोत सारी मशीन वगैरा ये बोहोत सारे सामान होते हैं। रनिंग मशीन होती हैं। डम्बल होते हैं तरह-तरह के बैठ के और यहां पे लोग बॉडी बनाने भी आते हैं।

और मशीन लिंटर डाल रही है और मजदी मज़दूर सामान ढो रहे हैं। तरह-तरह का सामान ढ़ो रहे हैं।

और बहोत सारे लोग है। वो इन्हे चरा ला कर खवा रहे है और यहाँ पर टिन है और पाइप पड़ा है और पौधे लग वे हैं और सीढ़ी भी है। यह हमें बहोत अच्छे लग रही है देखने में।

ये काफी मज़ा आ रहा देख --

यह एक भारतीय स्टेट बैंक है।

और ये इंद्र दिखने में बोहोत तरस आता --

यह एक घर बन रहा है और इसमें काफी सारे मजदूर काम कर रहे हैं। चौखट लग रही है। बड़े-बड़े बाउंड्री हो रही है।